यह फ़ोटो एक दुकान का फ़ोटो है जिसके ऊपर एयरटेल और वोडाफोन का लोगो लगा हुआ है और इस दुकान के बाहर दो आदमी खड़े हैं।

तथा और आदमी पैदल चल रहे हैं। यहाँ पर एक महिला और एक पुरुष जो हैं। वो एक ही बैग को दोनों तरफ से पकड़ हुआ है।

फोटो किसी ब्रिज के अंदर का फोटो है जहा पर आदमी सब चल रहा है और एक आदमी जो नाइ है इसका दुकान इसी के नीचे है।

और इसमें बोहोत सारे सामान भी लगे हुए हैं आगे फूलो का हार बना हुआ है हमने कुछ कुरकुरे रखे हुए है उसके नीचे एक आंटी भी खड़ी हुई है।